घर बहुत ही अच्छे लगते हैं। नहर पे ढ़ेर सा रे जंगल झाड़ है। ना धार में ढ़ेर सारे नाव है। बहुत ही --

एक रूम रखा हुआ है ।

वहां होटल के सामने एक मोटर साइकिल एक साइकिल खड़ा है जो कि दो चार आदमी खड़े है उसके बगल मे यूनियन बैंक यून लोन बैंक है।